मुझे इस फोटो में सामने सारी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एच_ए_आर_आई लिखा हुआ दिखाई देता है --

दो रोडे बनी हुई है सामने डेरा--

मे भगवान की मूर्ति बैठी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे बेंचेस हैं

महफूज जो जिसमें जब एक मेडिकल की शॉप जिस मेडिकल की शॉप पे कई सारे समान ओमान रखे हुए दिखाई दे रहें हैं सामने की ओर--

कई सारे सोफे ओफे रखे दिखाई दे रहे हैं भेजा गया गया है हरे कलर के सोफे रखे गए बीच में बेचें रखी--

ऊपर की ओर व्हाईट कलर से पोटा गया है ऊपर व्हाईट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही मुझको।

कई सारे समान टंगे दिखाई शैम्पू वाम्पु है कोई ले चिप्स विक्स मैगी मसाले कई सारी चीजे टंगी हुई दिखाई दे रही--

बीच में कैसा जाली लगे हुए दिखाई दिया आसमान साफ दिखाई दिया ऐसा बिल्डिंग बनी दिखाई दे--

और पंडाल बैठे दिखाई देता है।

पीली कलर से फोटो के ऊपर जो व्हाइट कलर फोटो का कैसा व्हाइट कलर फोटो का सामने कि ओर एक ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है रेड कलर कलर से --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक दीवार बनी हुई दिखाई दे रही जिसमें प्लस का आइकन बनाया गया है।

दीवाले वाइट कलर की पोती हुई दिखाई दे कई सारे लोहे के सा सामान डाले हुए दिखाई दे सामने की ओर--

अंदर की ओर जाते दिखाई दे खड़े दिखाई दे एक इंसान बाहर की ओर खड़े आजु-बाजु सब बोरी वोरी रखी हुई दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे --

बोरिया रखी हुई दिखाई दे रही हैं दोपहर का स शाम शाम का समय दिखाई दे रहा है सामने की ओर दुकान खुली हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

मुझे इस फोटो सामने को सीताराम लिखा हुआ एक एक दुकानदार दिखाई दे रहा जिस पे सीताराम लिखवाया गया--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर रेत का ढेर लगा हुआ दिखाई दे जिस रेट के ढेर में--